केंद्रीय क्षेत्र शिमला का बोर्ड लगा हुआ है।

ये काफी बड़ा जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी लेडिज खड़ी हुई हैं जो की योगा कर रही हैं।

और सामने ही एक ग्राउंड बना हुआ है काफी बड़ा --

ये कुछ सीढ़ियां गई हैं ऊपर दुकान पे जाने के लिए।

और रेलिंग के साइड आप देख सकते हैं एक फुटबॉल पड़ी हुई है।

ये एक पहाड़ है पहाड़ से ऊपर से पानी गिर रहा है काफी साफ है।

और साइडोंम में आप देख सकते हैंछोटे-छोटे पत्थर होगा--

और हॉल में काफी सारी लाइट लगी है बॉक्सों में--

और पत्थरों की ही बाउंड्री बनी हुई है।

और बलून से बहुत प्यारा डेकोरेशन किया गया--

ये काफी सुंदर एक पोल बना हुआ है।

रथ हैं जिसमें भगवान को बिठाकर निकाला जा रहा है।

और काफी बड़े छोटे पॉड भी रखे हुए हैं और एक पॉड रखा हुआ है जिसमें एक टेडी बेयर को बैठाया गया है।

ये काफी सुंदर एक बड़ा सा मकान है जिसमें काफी सुंदर सोफे लगाए गए हैं।

आ काफी सारी साइडों में दुकानें भी है।

और साइड में ही स्टैंड लाइट लगी हुई है काफी सुंदर--

पूजा का सामान रखा और दो थाली रखी हुई है डोलची रखी है चंदन वगैरह रखी --